ये एक इमारत है। इमारत मे बहुत सारे खंबे हैं। खंबे का कलर काला है। नीचे फर्श का कलर काला है ।

ये सब्जी मंडी है इसमे बहुत सारे सब्जी दिखाई दे रहे है।